कहीं भी खाली नहीं पूरा घना होके यह हुआ है ।

जोकि काफ़ी सुन्दर लग रहा है बाहर से देखने में। दो खिड़की है और एक बीच में जाने का रास्ता है जो कि खुला हुआ है। अभी दिन का समय भी है।

यहाँ पे एक बाइक भी लगा हुआ है जो कि पल्सर का है।

कुछ अगल-बगल में बहोत सारा पेड़ है।

सीढ़ी लगा हुआ है इस के उपर --

खिड़की सब है। यहाँ पे पेड़ सब भी है।